कुछ मिल रहा है और यहां पे बहोत सारे ब्लू कलर के डब्बे रखे हुए हैं और यहां पे एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है।

ये एक शॉप है और यहां पे बहोत सारी बुक्स हैं और यहाँ पे--

व्हाइट कलर के और यहां पे तीन चार पंखे भी लगे हुए वो भी व्हाइट कलर --

और यहां पे एक छोटा सा बेंच भी लगा हुआ है जो रेड कलर का है।

ये एक रूम ना यहां पे बहुत बड़ा सा बेड लगा हुआ है।

यहां पे एक इंसान है जो कि चेयर पे बैठा हुआ है उसके हाथ में एक--

और यहां पे एक लैंप भी लगा हुआ है ऊपर में--

और यहां पे एक ग्रीन कलर का सूट है। यहां पे एक टेबल है जो शीशे का है।

अ ये एक जिम है औ एक बैचलर रूम का समान है ओर यहां पे दो तीन खिचकिया है जो बोहोत बड़ी - बड़ी है औ उसमे शीशे लगे हुए है।

ओर यह पर ग्रीन कलर के कार्पेट बिछे हुए है।

ये एक होटल है और यहां पे दो आदमी हैं।

और उसके पास में एक ब्लैक कलर

कुर्ती पहनी हुई है और यहां पे बहुत सारे बक्स व् रहे है और यहां पे लाइट भी चल रहा है।

ये एक शॉप है और यहां पे सोनी लिखा हुआ है।

और यहां पे लाइट जल रहा है और यहां पे जो टेबल है वो ब्राउन कलर का है और यहां पे एक छोटी सी कुर्सी भी है जो ब्राउन कलर है।

और यहां पे जो सरदार ओ एक गाड़ी का सरदार--

एक ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई और एक ने रेड कलर की टोपी पेहनी हुई है।

और और में शीशे भी लगे हुए हैं।

वाइट कलर क एक बहोत सारे दरवाज़े है और यहां पे बहुत सारे बाइक है और यहां पे एक हेलमेट है जिसका रंग लाल है।

और यहां पे सब जिम कराते हैं यहां पे लाइट्स भी लगे हुए हैं।

पास एक बैग है यहां पे एस_बी_आई बैंक लिखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारा आदमी का भीड़ लगा हुआ है और एक बहोत बड़ा पेड़--